ये जिम है। जिम का फोटो है। जो सामने ब्लेक कलर के बड़ा सा मसीन है। उसके बगल में भी तीन और मशीने है। निचे फ़र्स है।

ये कोई सा लाइब्रेरी मालूम पड़ता है जिसमें चेयर्स लगे है जो ब्लू कलर के है टेबलस है।

ये कन्स्ट्रक्शन का काम दिखाई दे रहा है जिसमें ब एक ठो जहाज है पानी के बाहर --

अ-हरियाली का मौसम है निचे छोटे छोटे घास है एक छोटा सा जानवर टाइप सा लग रहा--

कोई घर या दुकान का सम सामने का फोटो हैं।

डिवाइडर है अ सब पर्यटन स्थल टाइप से सब शाम का मोस शाम का टाइम लग रहा हैं कार दिख रहा हैं बाइक हैं सभी लोग यहाँ रुक रहे हैं कुछ - कुछ बिकते हुए भी दिखाई --

ये कोई कपडे का दुकान पड़ रहा है जिसमें लेडिस लोग के कपडे लटके हुए है ऊपर में हवा आने जाने वाला कोई ए_सी टाइप से मालूम पड़ता है कोई बहुत बड़ा लाइटिंग्स लगे हुए है नीचे वाइट टाइल्स लगा हुआ है।

दो तीन लड़कियां दिखाई दे रही हैं हैप्पी बर्थडे का फ्लैग लगा हैं बगल में लडके दिखाई दे रहे हैं।

बगल में एकठो बड़ा सा कोई नेक्सा सीरीज करके है जहां कार खड़े हुए हैं।